चल रहा है जहाँ लोग आए हुए हैं| कुछ दोस्त लोग आपस में फोटोग्राफी कर रहे हैं| ऊपर उनके और सफेद और लाल कलर के फूलों से डेकरैशन है।

सफेद लाल और पीले करटैन्स लगे हुए हैं जहाँ सफेद फूलों से सजावट है| एक आदमी ने नीले रंग की शेरवानी पहन रखी है और दुपट्टा डाल रखा है| एक ने दो ने साड़ी पहेन रखी कुछ ने --

रोड है रोड के दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ लोग खड़े हैं यहाँ मशीन लगी हुई है कंस्ट्रक्शन की जो कि मिक्स करती है सारे सामान को गिट्टी और सीमेंट को।

और वर्कर्स लगे हुए हैं जो कि समान पर मसाला ढो ढो के ऊपर ले जा रहे है और में छत पे निर्माण करने में मदद कर रहे है।